यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी है।

यहाँ पे डेस्क दिखाई दे रही हैं।

जिसकी बालकनी दिखाई दे रही है।

खिड़की से बाहर के पेड़ वगैरा नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पे सामने कुर्सी और टेबल लगी हुई है।

और हिरण की साइड पे लोहे की जाली लगी हुई है।

और यहाँ पे नीचे की साइड में काफी मिट्टी दिखाई दे रही है।

जिस पे एक वाश रखा हुआ है।

और जो हाथी की सूंड होती है उसपे एक इंसान बैठा हुआ है।

और बहुत सारी साइकिल रखी हुई है।

पीछे की साइड पे सफेद दीवारे है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है।

जिसमें सु हरी - हरी घास लगी हुई है।

और सामने कुछ छोटे-छोटे दुकान दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक डमी है।

और किनारो के साइड में बहुत सारे घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

और ये लोग नीचे झुके हुए हैं सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं।